दिखाए जाने वाले पिक्चर में हम बहुत सी लाइटों को देख सकते हैं।

पिक्चर में हमें एक दुकान नजर आ रहा है।

दिखाई जाने वाली तस्वीर में हम एक शादी के मंडप को देख सकते हैं ।

यह तस्वीर में हम दो व्यक्तियों को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें बहोत सारे फूल नजर आ रहे है।

ये तस्वीर में हमें बहुत सारे पौधे नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारी लाल रंग की कुर्सियां नजर आ रही है।

यह छवि में हम एक व्यक्ति को बैठे हुए देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें कमरा नजर आ रहा है।

यह तस्वीर में हम बैग को देख सकते है।

तस्वीर में हमें एक बड़ी सी झील नजर आ रही है।

ये तस्वीर में हम दो महिला को देख सकते हैं।

दिखाये जाने वाले पिक्चर में हम कई गाड़ियों को पार्क हुए देख सकते हैं।

इस छवि में हम बहुत सारे मकानो को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें एक जिराफ की स्टेचू नजर आ रही है।

ये छवि में हम बहोत सारे डॉक्टरों को देख सकते हैं।

यह छवि में हमें लाइटें नजर आ रही है।

यह तस्वीर में हमें एक पार्क नजर आ रहा है।

यह तस्वीर में हमें बहोत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं।

यह छवि में हम सफेद रंग की एक कार को देख सकते हैं।

यह तस्वीर में हमें बहुत से मनुष्य नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में हम बहोत सारे पौधों को देख सकते हैं।